ये देख रही हो ना कितना मस्त लग रहा है ये चीज देखने के लिए मील रहा है बताओ यार कितना सुन्दर लग रहा हैं।

ई कितना सुन्दर लग रहा है ये चीज देख सकते हो आपलोग भी हम तो देख ही रहे है कितना अच्छा जबरदस्त लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा ये नज़ारा।

क्या बात है कितना अच्छा काम यहाँ पर कर रहे है मिस्त्री लोग ने बहुत सुन्दर -सुन्दर काम कर रहे है कितना अच्छा लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है क्या बात है बहुत सुन्दर लग रहा है।

मस्त लग रहा है कितना बढ़िया काम कर रहे लोग।

आपको जो बनाया होगा उसको हमेशा- हमेशा खुश रखियेगा भगवान जी वो बहुत अच्छा काम किया है आपके लिए बहुत सुन्दर काम किया है।

यह तो लग रहा है धाने कटा रहा है।

क्या बताए बहोत सुन्दर लग रहा है देखने में कितना अच्छा लग रहा है नजारा भी खुशबु भी ई सब का क्या है यार कितना अच्छा। --

में यहाँ पे पंद्रह अगस्त जैसा झंडा पहराने वाला भी है।

क्या बात है कितना सुन्दर है मत पूछिए बहुत सुन्दर लग रहा है ये नजारा देखने लायक लग रहा है देखने के लिए ये मिल रहा है देखिये वीडियो में बने रहिए कितनी सुन्दर सुन्दर नजारा है ये देख सकते है आपलोग भी।

कितना अच्छा नजारा लग रहा है देख सकते है कितना मस्त लग रहा है ये नजारा कितना सुन्दर है बताइए न कितना अच्छा नजारा है ये।